के टच को कस्टमाइज अपनी इच्छा के अनुसार बनाना करने पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि कैसे एक लेक्चर बनाएँ
के टच को कस्टमाइज करें
खुद का कीबोर्ड बनाएँ
यहाँ हम उबंटू लिनक्स 1110 पर के टच 171 इस्तेमाल कर रहे हैं
चलिए के टच खोलते हैं
ध्यान दें कि लेवेल 3 दर्शा रहा है
ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने के टच बंद किया था तब हम लेवल 3 में थे
हम अब सीखेंगे कि एक नया लेक्चर कैसे बनाएँ
यहाँ हम अक्षरों का एक नया समूह बनाएँगे जोकि टीचर्स लाइन में प्रदर्शित हो सकता है
मुख्य मेन्यू से फाइल चुनें और एडिट लेक्चर पर क्लिक करें
ओपन लेक्चर फाइल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
अब क्रिएट न्यू लेक्चर ऑप्शन चुनें और ओक पर क्लिक करें
क्टच लेक्चर एडिटर डायलॉग प्रदर्शित होता है
टाइटल फील्ड में आ डिफॉल्ट लेक्चर चुनें और मिटायें और टाइप करें माय न्यू ट्रेनिंग लेक्चर
लेवेल एडिटर लेक्चर का लेवल प्रदर्शित करता है
लेवेल एडिटर बॉक्स के अंदर क्लिक करें
अब दाता ओएफ लेवेल 1 के अंदर इस लेवल फील्ड में न्यू कैरेक्टर्स में एम्पर्संड स्टार और डॉलर चिह्नों को प्रविष्ट करें
हमने इन्हें केवल एक बार प्रविष्ट किया
ध्यान दें कि यह चिह्न लेवल एडिटर बॉक्स की पहली लाइन में प्रदर्शित हो रहे हैं
लेवल डेटा फील्ड में दर्शाए जा रहे टेक्स्ट को पहले चुनें और मिटायें
एम्पर्संड स्टार और डॉलर चिह्नों को पाँच बार प्रविष्ट करें
अब लेवल एडिटर बॉक्स के अंदर प्लस चिह्न पर क्लिक करें
क्या हुआ
लेवल एडिटर बॉक्स में वर्णमाला से सम्मिलित एक दूसरी लाइन प्रदर्शित होती है
लेवल एडिटर बॉक्स में दूसरी लाइन को चुनें
लेवल फील्ड का डेटा अब 2 प्रदर्शित कर रहा है
यह हमारे टाइपिंग पाठ का दूसरा लेवल होगा
न्यू कैरेक्टर्स इन थिस लेवेल फील्ड में एफजे प्रविष्ट करें
लेवेल दाता फील्ड में एफजे पाँच बार प्रविष्ट करें
अपने टाइपिंग पाठ में आप को जितने की आवश्यकता है उतने लेवल्स बना सकते हैं
उसी प्रकार से अपने टाइपिंग पाठ में आप जितने चाहे उतने लेवल्स बना सकते हैं
सेव आइकन पर क्लिक करें
सेव ट्रेनिंग लेक्चर - क्टच डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
नेम फील्ड में न्यू ट्रेनिंग लेक्चर प्रविष्ट करें
अब फाइल के लिए एक फॉर्मेट चुनें
फिल्टर ड्रॉप डाउन सूची में ट्रायंगल पर क्लिक करें
फाइल के फॉर्मेट के लिए क्टच लेक्चर फाइल्स कोष्ठकों के अंदर starktouchएक्सएमएल चुनें
यहाँ फाइल सेव करने के डेस्कटॉप पर ब्राउज़ करें
सेव पर क्लिक करें
क्टच लेक्चर एडिटर डायलॉग बॉक्स अब न्यू ट्रेनिंग लेक्चर नाम प्रदर्शित करता है
हमने दो लेवल्स के साथ एक नया ट्रेनिंग लेक्चर बना लिया है
क्टच लेक्चर एडिटर डायलॉग बॉक्स बंद करें
अब जो लेक्चर हमने बनाया उसे खोलें
मुख्य मेन्यू से फाइल चुनें और फिर ओपन लेक्चर पर क्लिक करें
सिलेक्ट ट्रेनिंग लेक्चर फाइल डायलॉग प्रदर्शित होता है
डेस्कटॉप पर ब्राउज़ करें और न्यू ट्रेनिंग lecturektouchएक्सएमएल चुनें
ध्यान दें कि एएमपी और चिह्न टीचर्स लाइन में प्रदर्शित हो रहे हैं
चलिए टाइपिंग शुरू करते हैं
हमने अपना खुद का लेक्चर बनाया और उसे एक टाइपिंग पाठ की तरह इस्तेमाल किया
के टच टाइपिंग पाठों में वापस जाने के लिए मुख्य मेन्यू से फाइल चुनें ओपन लेक्चर पर क्लिक करें
निम्न फोल्डर पाठ को ब्राउज़ करें
root gtusr gtshare gtkde4 gtapps जीटीकेटच और englishktouchएक्सएमएल चुनें
हम के टच को अपनी प्राथमिकता के अनुसार बना सकते हैं
उदाहरणस्वरुप जब आप एक अक्षर टाइप करते हैं जो टीचर्स लाइन में नहीं प्रदर्शित है स्टुडेंट्स लाइन लाल रंग में बदल जाती है
आप अलग प्रदर्शन के लिए रंगों को अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं
अब कलर सेटिंग्स बदलें
मुख्य मेन्यू से सेटिंग्स चुनें और कॉन्फिगर - क्टच पर क्लिक करें
कॉन्फिगर - क्टच डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
कॉन्फिगर - क्टच डायलॉग बॉक्स में कलर सेटिंग्स पर क्लिक करें
कलर सेटिंग्स विवरण प्रदर्शित होता है
उसे कस्टम कलर फोर टाइपिंग लाइन बॉक्स को चेक करें
टीचर्स लाइन फील्ड में टेक्स्ट फील्ड के आगे कलर बॉक्स पर क्लिक करें
select कलर डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
select कलर डायलॉग बॉक्स में ग्रीन पर क्लिक करें
ओक पर क्लिक करें
कॉन्फिगर - क्टच डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
एप्ली पर क्लिक करें
ओक पर क्लिक करें
टीचर्स लाइन में अक्षर हरे रंग में बदल गये हैं
अब हम अपना खुद का कीबोर्ड बनाएँगे
एक नया कीबोर्ड बनाने के लिए हमें मौजूदा कीबोर्ड का इस्तेमाल करना होगा
इसमें बदलाव करें और इसे दूसरे नाम से सेव करें
मुख्य मेन्यू से फाइल चुनें और एडिट कीबोर्ड लेआउट पर क्लिक करें
ओपन कीबोर्ड फाइल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
ओपन कीबोर्ड फाइल डायलॉग बॉक्स में ओपन आ डिफॉल्ट कीबोर्ड चुनें
अब इस फील्ड के आगे वाले बटन पर क्लिक करें
कीबोर्ड्स की सूची प्रदर्शित होती है
enkeyboardएक्सएमएल चुनें
ओक पर क्लिक करें
क्टच कीबोर्ड एडिटर डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
कीबोर्ड टाइटल फील्ड में ट्रेनिंग कीबोर्ड प्रविष्ट करें
हमें कीबोर्ड के लिए एक भाषा चुनने की आवश्यकता है
लैंग्वेज इद ड्रॉप डाउन सूची में से ईएन चुनें
मौजूदा कीबोर्ड में फॉन्ट्स बदलें
सेट कीबोर्ड फोंट पर क्लिक करें
सिलेक्ट फोंट - क्टच डायलॉग बॉक्स विंडो प्रदर्शित होती है
सिलेक्ट फोंट - क्टच डायलॉग बॉक्स में फोंट के लिए उबुंटू फोंट स्टाइल के लिए इटालिक्स और साइज के लिए 11 चुनें
अब ओक पर क्लिक करें
कीबोर्ड सेव करने के लिए सेव कीबोर्ड एएस पर क्लिक करें
सेव कीबोर्ड - क्टच डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
निम्न फोल्डर पाथ को ब्राउज़ करें
root usr share kde4 apps क्टच और englishktouchएक्सएमएल चुनें
नेम फील्ड में practicekeyboardएक्सएमएल प्रविष्ट करें
सेव पर क्लिक करें
फाइल ltnamegtkeyboardएक्सएमएल फ़ॉर्मेट में सेव हो गयी है
क्लोज पर क्लिक करें
क्या आप नया कीबोर्ड तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं
आपको यह kde एडू मेल आईडी पर मेल करना होगा
यह फिर के टच के अगले वर्ज़न में सम्मिलित होगा
इसी के साथ हम के टच पर इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने प्रशिक्षण करने और कलर सेटिंग्स में परिवर्तन करने के लिए एक लेक्चर बनाना सीखा
हमने एक मौजूदा कीबोर्ड लेआउट को खोलना उसको बदलना और खुद का कीबोर्ड बनाना भी सीखा
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
अपना खुद का कीबोर्ड बनाएँ
कीबोर्ड में रंगों और फॉन्ट लेवल में बदलाव करें
परिणाम जाँचे
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो लिंक पर उपलब्ध है
आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आप से विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद